यहाँ पर हमलोग देख पा रहे है एक शॉपिंग मॉल है।

और हमलोग एक बाइक देख पा रहे है और एक भी नजर आ रहा है और --

जो की बहुत ही छोटा है और जिसका बेहतर एक मूर्ति किया हुआ है और सामने एक दानपेटी की नज़र आ रहा है।

और कुछ करंट का तार नजर आ रहा है और झील के उस पार बहुत ही बड़ा-बड़ा पेड़ भी नजर आ रहा।